पास में कई सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं गाडी दिख रहा है आसपास में मकान भी नजर आ रही हैं।

एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने कुछ चेयर्स रखी हुई दिख रही है जहाँ बच्चे पढते लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अंदर में बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं सामने में कुछ सामान टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने लाल रंग की सोफा रखी हुई है ऊपर पंखा नज़र आ रहा है एक डस्ट्बिन रखा हुआ दिख रहा है।